वह दिखाई गया है पेड़ लगे दिखाए गए है बादल दिखाई दे रहा है एक पेड़ लगा दिखाया गया है ।

दो लोग एक साथ मंदिर की सीढ़ी पर जाते हुए दिखाए गए है कुछ पेड़ लगे हू--

इस इमेज में बड़ा-सा कॉलेज की इमेज दिखाई गई है इस पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर लिखा हुआ दिखाया गया है ग्राउंड बना हुआ है पेड़-पौधे लगे दिखाए गए है सड़क दिखाई गई है ऊपर--

कैद किए गए पक्षी दिखाए गए हैं दोनों तरफ भरे बत्तख--

ये सेविंग सब दिखाई दे गई हैं।

इस इमेज मे जॉकेट कैटलॉक दिखाए गए है जॉकेट येलो कलर में है ब्लैक कलर में है।

पेड़ लगे दिखाए गए है सड़क दिखाई गई है टूटी-फूटी सड़क है।

यह एटीएम व्यापार लिखा हुआ दिखाया गया है।

शॉर्ट्स और लोअर पहने हुए लोग दिखाए गए हैं।